ब रूम में सब स्त्री और पुरुष अ पुरुष बैठ कर योगा कर रहे हैं।

की ये कक्षा है कक्षा में बेंच है बेंच और --